अपने क्लास से कुछ बन के बना के दिखाना पड़ता है और इससे बढ़िया बढ़िया प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा--

बाथरूम बनाने के लिए एक गड्डा किया गया है देख सकते है कितनी बड़ी गड़े की गई है और कितने बड़े गेट लग रहे है गेट का डिज़ाइन भी देख सकते है बहुत आकर्षित इस साइड एक बिल्डिंग दिखाई जा रही है और लेफ्ट साइड --